यह एक पानी का फुवारा है और आसपास कई सारे पेड़ है पेड़ के साथ ही बहुत सारी बिल्डिंगे भी आसपास दिखाई दे रही हैं।

यह एक गली दिखाई दे रही है गली के आस-पास बहुत से गेट दिखाई दे रहे हैं।